-- पर एक बोहत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर बोहत सारी बाइक भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी रखे हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ--

--पर ये बहुत ही बड़ा मॉल बना हुआ है जहाँ पर बोहत सारी सामान दिखाई दे रहे बहुत ही अच्छी की दुकाने भी रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी हरी हरी दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत ही अच्छी साफ सफाई भी दिखाई दे रही है।